और उसके बाजू में एक ऑटो को देखते पीछे साइड भी एक ऑटो आ रहा है उसके पीछे साइड भी एक फोर व्हीलर गाड़ी है इसके आलावा हम कुछ बाइक्स को रोड पर जाते हुए देखते हैं।

जिसके बोर्ड पर कुच्छ लिखा हुआ है मुझे बस संग्रहालय लिखा हुआ दिखाई देता है।

इस पिक्चर में हम देखते हैं की एक शॉप की उपरी बोर्ड पर गंभीर ड्राई क्लीनरस --

और अपने हाथ में ऊपर की ओर एक शूज लिए हुए है जो की ब्लैक कलर का है।

इसके पीछे हमें एक टेम्पो दिख रहा है। सबसे पीछे हमें एक वाइट कलर की कार दिख रही है। और उसके पिच्छे हमें एक स्कूटर दिख रही है।

इस पिक्चर मे बहुत सारी मशीनों को देखते है जो की सिल्वर कलर की हैं।

इस पकचर में सबसे पहले हमे एक गेट दिखता है जिसपर लिखा हुआ है एंट्री ।

पहली बस में जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और बाइट का है ऊपर साइड हम आसमान को देखते हैं।

इस पिक्चर में हम बहुत सारी फोटो देखते हैं जिनपर माला चढ़ी हुई है बाजु में एक आंटी हैं।

इस पिक्चर में हम एक रोड को देखते हैं और बाजु में हम पेड़-पौधों को लगे हुए देखते हैं। इस रोड पर एक लड़का आ रहा है।

इस पिक्चर मे हमे एक अमरुद दिखाई देता है।

और ऊपर साइड में हमे खुला नीला आसमान दिखाई दे रहा है इनके बाजु मे छोटे-छोटे से हमे घर भी दिख रहे हैं जिनपर गिलीन कलर की पेंट है।

अअ क्षेत्र है वहां पे जो रंग है वो ब्लू कलर का है नीचे साइड जो चटाई बिछी है वो ग्रीन है।

इस पिक्चर में हम एक रोड को देखते है जहाँ से एक येलो कलर की कार जा रही है। उसके बाजु में एक --

लेफ्ट साइड मे हमे एक खम्भा दिख रहा है। जोकि काफी ऊ-ऊचा है। और राईट साइड मे हमे एक और बाइक दिख रही है।

लाइट ग्रीन कलर की है और उपरी साइड मे हम जो आसमान देखते है वो हमे पर्पल कलर का दिखाई देता है।

और यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है रुपीस नाइनटी नाइन ।

उनके बाजु में हमें एक आ-ऑटो को देखते हैं और पीछे साइड में हम एक और बाइक को देखते हैं।